ये एक टेम्पू का चित दिखाई दे रहा है और इस टेम्पू के बगल में कई सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

ये एक झूले का चित्र दिखाया जा रहा है कि इस पार्क में कई सारे झूले वगैरा लगे हुए हैं।

और इस बगल में कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए --

और इस ए.टी.एम. में कई सारे लोग रुपये --